इग्ज़ैम दे रहे है इसमें खिड़किया दिख रही हैं।

नीचे गाएज गाय है।

उम्मुर्गी फार्म बना हुआ है।

इसमें दरवाजे दिख रहे हैं साइडों में खिड़कियां दिख रही हैं।

और गेट इसमें लगा हुआ है पोस्टर लगा है उसमें --